इधर सामने एक छोटा सा चर्च है चर्च के सामने कुछ महिला कुछ लोग कुछ बच्चा दिख रहा है चर्च के पीछे में एक फील्ड दिख रहा है।

इधर पे एक मिट्टी का लैंड दिख रहा है लैंड मे कुछ बस खड़ा है एक छोटा सा बस भी है दूर मे एक बिल्डिंग दिख रहा है बिल्डिंग बहुत बड़ा है बिल्डिंग के बीच मे एक बस खड़ा है।

इधर पे एक रेस्टोरेंट है रेस्टोरेंट बहुत बडा है इधर अच्छा खाना मिलती है सामने बड़ा-सा टेबल दिख रहा हैं टेबल में बहुत सारे डिश है स्पून भी है।

इधर पे एक फील्ड दिख रहा है फील्ड बहुत बड़ा है इस फील्ड में रोज बहुत सारे लड़के खेलने आते हैं दूर में बहुत सारे पेड़ दिख रहा है।

इधर पे एक स्विमिंग पुल दिख रहा है स्विमिंग पूल मे बहुत सारे लोग स्विमिंग कर रहा है एक है बाहर मे कुछ लोग खड़ा है पास मे एक --

सामने बहुत सारे वीवो कंपनी की मोबाइल दिख रहे है मोबाइल बहुत बड़ा है इस दुकान में बहुत लोग रोज आती है।

इधर पे एक पेंडल दिख रहा हैं पेंडल बहुत बड़ा हैं पेंडल के चार पाँच मे बहुत सारे लाईट जल रहा है सामने एक पोदिप दिख रहा है पोदिप पे आला जल रहा है।

सामने कुछ औरत एक लोग खड़ा है लोग की माथा पे एक झोरा दिख रहा है।

बहुत भक्तों की भीड़ होती हैं मंदिर के सामने मोई दिख रहा हैं।

इधर पे एक ए.टी.एम. दिख रहा है ए.टी.एम के अंदर एक लोग हैं ए.टी.एम. के बाहर दो लोग खड़ा है एक लोग की हाथ पे हेलमेट है पास में एक लोग बैठे हैं।

सुंदर हैं बहुत बड़ा हैं मूर्ति के ऊपर मे एक अर्चला दिख रहा हैं दूर मे एक बड़ा-सा अर्चला दिख रहा हैं।

इधर पे सामने एक छोटा सा हाउस दिख रहा है हाउस की सामने --

फ्लोर मे कुछ शूज हैं एक डस्टबिन हैं।

सामने महिला टीचर खड़ा हैं टेबिल पर बहुत सारी चीज दिख रहा हैं।

इधर पे रोज बहुत भीड़ होती हैं शॉपिंग मॉल के बाहर कुछ गेट दिख रहा हैं।

इ नीच में कुछ लेंड दिख है लेंड के चारपास में बहोत सारा पेड़ दिख रहा है इधर पे रोज बोट सारे लोग घूमने आती है।

इधर पे एक केफे दिख रहा हैं केफे के सामने फूल से सजाया है एक बॉक्स दिख रहा हैं बॉक्स --